और यहाँ पर काफी मिरर गोल्डन लाइट भी लगी हैं और यहाँ पे पुरे में वाइट मार्बल बिछा हुआ है और यहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ भी नज़र आ हैं।

और यहाँ ये लाइट भी है और यहाँ ये पूरा टेंट बना हुआ है और यहाँ पर एक वायर भी नज़र आ रहा है।

यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक मैन है जो अपनी फ़ोटो खींच रहा है पीछे की तरफ कुछ कन्स्ट्रक्शन का काम है और यहाँ बड़े पेड़ भी हैं और यहांँ खाली- खाली सी जगह भी दिख रही है।

और यहाँ एक टीचर कुछ सीजर से काटती हुई भी नजर आ रही हैं और यहाँ सभी बच्चे बैठे हुए हैं जो अपने - अपना काम कर रहे हैं यहाँ बड़ी -बड़ी खिड़कियां भी लगी हुई हैँ और यह दिन का ही टाइम है।

यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ये एक स्कूल है जहाँ पर कुछ गर्ल्स खड़ी नजर आ रही हैं और उनके डेस्क पर कुछ सामान है इधर सीज़र है।

और यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर सभी बच्चे बैठे हुए हैं जो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे हैं और यहा सभी बच्चे मन लगा के काम कर रहे हैं पीछे की तरफ बड़ी ब्लैक शटर है जो बंद है।

मारबल बिछा हुआ है और यहा पर बड़े-बड़े डोर है उनपे करटैन्स भी डले हुए है यहा फैन है और यहा सभी गर्ल्स सेम साइज़ में योगा कर रही है एक जैसा और सेम और यहा पर योगा क्लासेस हैं।

यहाँ पर ये एक लोडिंग दिख रही है कुछ ट्रक हैं जहाँ पर कुछ बोरियाँ भी रखी हुई हैं और बोरियो पर--

यहाँ पर ये एक जगह है जहाँ काफी लोग भी दिख रहे हैं ये मेला लग रहा है जहाँ पर क --

यहाँ पर आपको पता चल रहा है यहा एक मैन है जो अपना कंप्यूटर भी इनके डेस्क पे रखा हुआ है ये पिछली तरफ भी एक मैन खड़े है और यहाँ एक कूलर लगा हुआ है कोई यहाँ पर ये मैन अपनी सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं।